एक ठो बूढ़ी बहुत पीछे बैठी है पता नहीं वह क्या देख रही है गुलाब का फूल है या फिर गेंदा फूल है।

बहुत अच्छा पोज़ दिए है बहुत खूब सूरत गुब्बारा लगा है पीला हरियर नीला और ब_ दो आदमी खड़ा है।

यह मतलब ये चाय निकलते हैं चाय बेचते हैं और लाल कपडा--

बड़ा होटल बहोत बड़ा होटल है इसमे खाना-वाना खाने आते है बंदे लोग और बंदीयो लोग।